इस चित्र मैं हम देख सकते है की यहाँ पर कितने सारे छात्र अम्म महिलायें और पुरुष दोनों नज़र आ रहे है।

वेसे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों में आये हुए है और कुछ लोग पैदल चल कर आये हुए है यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है ऐसा मालूम प्रतित होता है की यहाँ पर कोई कार्य के लिए सभी को बुलाया गया है।

इस चित्र मैं हमें बड़ा सा मिट्टी का मैदान नज़र आ रहा है साइक है जो के अअअ सड़क वगेरा होती है उस तरह से हम देख सकते है की दूर दूर कितने सारे घर मोजूद नज़र आ रहे है।